मॉल की जमीन में टाइल्स का प्रयोग किया गया है।

यह एक मैदान का दृश्य है।

इसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगियां दिखाई दे रही है।

एक युवक के हाथ में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक मैदान का दृश्य है।

मैदान को बाउंड्री के मदद से घेरा गया है यहां पर बाउंड्री को पत्थरों की मदद से बनाया गया है।

एवं यहां पर दो युवक भी दिखाई दे रहा है जोकि ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।

इसका फेस ब्लर किया गया है और युवक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे मछलियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर रूम का दरवाजा कांच के मदद से बनाया गया है।

यहां पर दुकान में बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है जो की अलमारी में सजा कर रखा हुआ है।

यह एक सड़क का दृश्य है।